और गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं व्हाइट कलर के और रेड कलर के।

और ऊंची ऊंची दीवार भी दिखाई दे रही है।

और नहेर में पानी दिखाई दे रहा है कुछ खंबे दिखाई दे रहे हैं।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

यह एक पौधों की नर्सरी है।

और बाहर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यह एक घर है जिसके बाहर मुझे एक जन सेवा केंद्र दिख रहा है।

और घर के बाहर खिड़कियां दिखाई दे रही है गेट दिखाई दे रहे हैं।

इस रेस्टोरेंट में मुझे बहुत सारे सोफे दिखाई दे रहे हैं और दो कुर्सी दिखाई दे रही है।